एक आदमी छाता लेले हुआ है छाता नज़र आ रहा है उसने टोपी पहने हैं।

एक आदमी है कई सारे कु-- कुर्सी लगा हुआ है ऊपर में पोस्टर है क्लैंडर है एक--

कई लड़कियां व्यायाम कर रही है ]

एक-एक महेफिल है महफ़िल में ढोलक है।

दुर्गा माँ का फोटो है ऊपर पीला लाल से पेंट किया हुआ है।

ओर एक कई सारा आदमी है ऊपर में फुल है ऊपर में लाल पेन है खिरकी हैं।

एक मशीन है मशीन का ऊपर एक बच्चा है नीचे बूढ़ा है।